एक एक्टिवा है और यहां लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं कुछ लोग आस पास खड़े हैं।

सामने की तरफ फि खारे पीने की चीजे रख रखी है और इधर उधर भी खाने की--

रखे गए हैं। यहां दो लोग है जो--

एक्सरसाइज कर रहे हैं यहां काफी सारी--

काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहां काफी सारे से स्टूल भी है यह हरा भरा गार्डन है यहां सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है।

इसके हाथ में एक झाड़ू है और उसने अपना मुंह ढका हुआ है।

एक शोरूम ट्रेंड्स का है ट्रेंड्स में काफी सारे कपड़े है।

हर प्रकार की मुर्गियां है और वो खेत की तरफ निहार रही है।